चित्र में एक इमारत दिखाई दे रही है जो को लाइटिंग से सजी हुई है।

आदमी नजर आ रहे बाजू मे पेड़ पौधे लगे हुए है।

चित्र में एक इमारत दिखाई दे रही है जिसके सामने एक व्हाइट टीशर्ट में आदमी खडा है।

चित्र में एक दुकान जैसा नजर आ रहा है तीन लड़के कुर्सियों पर बैठे हुए है टेबल पर--

एक लड़की ने परी का ड्रेस पहना है हाथ में भारत का झंडा दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है जो की पार्लर जैसा दिख रहा है एक लडकी कुरसी पर मोबाइल हाथ में लिए बैठी है।

इस चित्र मे एक दुखान दिखाई दे रहा है सामने एक लाल डस्ट्बिन रखा हुआ है।

तीन आदमी दुकान के सामने खड़े है पीछे पटरी जैसा नजर आ रहा है।